काला आसमान है सफ़ेद पाइप है कुछ लड़के खड़े हैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है एक लड़का काम कर रहा --

काले रंग की टोपी पहने दीवार ब्लू रंग की है उपर की साइड मे हरी घास है और एक लड़का सेल्फ़ी ले रहे है फोटो ले रहे है और पत्थर के बीच मे एक पोस्टर लगा है।

पिंजड़े के अंदर बहुत सारे मिट्ठू है जो हरे रंग के और सफ़ेद रंग के कबूतर है और सफ़ेद रंग के भी पक्षी है।

एक औरते जो लेटी हुई है सो रही है कुर्सी पे ट्रॉली बैग रखा हुआ है और ऊपर लाइटे लगाई गईं है जो सफेद लाईट जल रही है।

टाइल्स को पकड़ के उठाया जा रहा है और एक आदमी खड़ा है जो फोन चला रहा है।

दो लड़की खड़ी है दो लड़की बैठ के डास कर रही है एक साइड पे गमले रखे गए है जों कथई रंग की उसके ऊपर पेड़ लगी हुई है कुछ मूर्ति बनाए गए है जो विष्णु जी की और कृष्णा जी की मूर्ति है।

एक छोटा सा क्लास है बहुत सारे लोग बैठे हैं सफेद रंग के कपड़े लाल रंग की कुर्सी है दीवाल सफेद रंग का है।

जो काले और सफेद रंग की है। पर्दे कत्थई रंग की है दीवाल है। कुर्सी रखी गई है जो काले लाल रंग की कुर्सी है। एक आदमी खड़ा जो ला काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

बगल में एक पोस्टर जो सफेद है और बगल में डिब्बे रखे गए हैं। हैंडवाश रखा है जो सफेद हैंडवाश हैं।

एक आदमी जिम कर रहा है जो जूता पहनना हुआ है। प्लेट लगी हुई हरे रंग की पिंक कलर की ऊपर की साइड पर छत है जो सफेद लाइट जल रही है। सामने पर्दे खड़े हैं।

और और ऐ.सी. लगा हुआ सफेद और सामने पंखे लगे हुए हैं। सफेद रंग की लाइट जल रही है। नीचे टाइल्स बिछा हुआ है।